घर के छत पर खपड़े लगे हुए हैं।

सड़क के बीच में काफी सारे छोटे पौधे हैं जिनका रंग हरा है।

इस दृश्य में कई सारे बिस्तर लगे है।

पीछे ढेर सारा बालू रखा हुआ है।

गेट के एक साइड एक हिरण की मूर्ति है और दूसरे साइड चीते की मूर्ति है।

आसमान में काफी सारे बादल है।